इन सब बिल्डिंग पूरा ऊपर सेवन से बना हुआ है दूर में टावर्स भी है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सुंदर सा रूम दिखाई दे रहा है जो की शायद से एक दुकान है।

यहां पर अलग टाइप का सामान का सेलिंग हो रहा है जैसे कि टाइल्स --

मुझे एक बहुत बड़ा सा स्टैचू दिख रहा है जीसस क्राइस्ट का।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा रूम दिख रहा है जो कि शायद एक होटल है।

यहां पर बहुत सारा लाइट्स जो कि जल रहा है।

यहाँ मुझे टेबल्स भी दिख रहा है जिसको पर टिशू पेपर रखा गया है।

मुझे इस तस्वीर में एक रूम दिख रहा है जिसका वॉल भी व्हाइट कलर का है।

कुछ टेबल से जो कि पूरा का पूरा लोहा से बना हुआ है उसका ऊपर बहुत सा सामान रखा गया है।

मुझे औरत भी दिखाई दे रहा है जिसने येलो कलर का साड़ी पहना हुआ है।

उसपे पर गवर्नमेंट कॉलेज कुछ लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर सा नजारा दिख रहा है दूर में एक बहुत बड़ा सा पाहाड़ है जो कि ग्रीन कलर का है।

में बहुत प्लेन एरिया भी है जहां पर बहुत सारा पेड़ दिख रहा है जोकि बहुत बड़ा बड़ा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सुंदर सा रूम दिख रहा है जो कि शायद से एक होटल है इसका वॉल भी पिंक कलर का है और उसका खिड़की पूरा शीशा से बना हुआ है।

यहां पर टेबल्स भी हैं जो कि पूरा पूरा लकड़ी से बना हुआ है और उसका ऊपर टिशू पेपर और बहुत कुछ रखा गया है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट कलर का है।

इसका वॉल पूरा का पूरा शीशा से बना हुआ है।

और मुझे मिरर भी दिख रहा है।

बाहर में मुझे एक पोस्टर दिख रहा है जहां पर बहुत सारा सामान का पेंटिंग भी है।

और एक रेड कलर का धागा भी है।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

बहुत सारा खिड़की दिख रहा है जो की पूरा का पूरा लकड़ी लोहा और शीशा से बना हुआ है।

दरवाजा है उसका ऊपर व्हाइट कलर का लगाया गया है।

यहां पर बहुत सारा वायर्स भी है मुझे यहां पर बहुत सारा बाइक्स भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं जो की अलग अलग कलर के हैं और इनमें खिड़की पूरा का पूरा शीशा से बना हुआ है।

यहां पर मुझे फेंसिंग भी दिख रहा है जो कि पूरा पूरा लोहा से बना हुआ है और उस पर कंबल सुखाया गया है।

और एक बिल्डिंग व्हाइट और रेड कलर का है जिस पर क्रॉस भी लगा हुआ है।

शॉप पूरा का पूरा शीशा और लकड़ी से बना हुआ है इसका ने बहुत सा सामान रखा गया है।

यहां पर एक टेबल भी है जो कि व्हाइट कलर का है उसका ऊपर केक रखा गया है जो कि वाइट और पिंक कलर का है।

मुझे एक स्कूटी भी दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का है।

यहां पर बहुत सारे औरत का पिक्चर्स है।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत लंबा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है जो कि पूरा पूरा सीमेंट से बना हुआ है।

यहां पर बहोत सारा पेड़ भी है जोकि बहोत बड़ा है यहां पर मुझे बहोत बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है जोकि अलग अलग कलर का है।

यहां पे बहुत सारा जिम का सामान भी है।

जो कि ब्राउन कलर का है उसके ऊपर रेड कलर का डॉट भी है।

यहां पे मुझे बहोत बड़ा बड़ा पेड़ भी दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है।

यहां प मुझे बहुत सारा प्लास्टिक चेयर देख रहा है जो की अलग अलग कलर का है।

यहां पर बहुत सारे शटर्स भी है जोकि रेड कलर का है।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

यहां पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है जो कि पूरा पूरा सीमेंट्स से बना हुआ है।